उसके बाद लाइन में जल कर दिखाई दे रहा है।

और ये रूम में दो खिड़की भी है और खिड़की में पर्दा सब भी लगा के है।

और सोफा सेट और ये टेबल भी है।

ये फोटो में एक बस दिखाई दे रहा है और बस जो ग्रीन कलर का है।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

और दोनों का कमर में ब्लू कलर का रस्सी बांध के हैं और लड़का का हाथ में एक लाथि है।

ये उस दुकान के अंदर एक आलमारी है जो बहोत सारा सामान रख के है।

इस फोटो में मुझे दो लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहा है।

मुझे ब्लू कलर का गमला में दिखाई दे रहा है जो उस लड़की का हाथ में है।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

मुझे ग्राउंड साइड में दो लाइट पोस्ट भी दिखाई दे रहा है जो जल के है।

और औरत जो येलो कलर का साड़ी पहन के दिखाई दे रहा है।

ये एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।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

के बाद घर का बाहर में फेंसिंग भी है जो लाइन से बना के बंबू से।

इस फोटो में मुझे एक हाईवे दिखाई दे रहा है।

उसके बाद ऊपर में घर लोग भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे इलेक्ट्रिक वायर भी दिखाई दे रहा है जो बस के ऊपर से जा के है।

बाहर साइड में घर लोग भी दिखाई दे रहा है और वॉल का कलर जो व्हाइट कलर से पेंट करके है।

सिलिंग पे दो फैन भी दिखायी दे रहा है।

ये फील्ड का साइड में पीला लोग भी दिखाई दे रहा है।

पार्क का साइड साइड में पेड़ लोग भी दिखाई दे रहा है और--

पास वाला घर के सामने एक गाड़ी है और वह जो वाइट कलर का है।

और फर्श वाला घर का सामने एक बाइक दिखाई दे रहे है जो आगे का भी दिखाई नहीं दे रहा पीछे बस पीछे का दिखाई दे रहा है।

के बाहर उस ऑटो के अंदर में दो आदमी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारा आदमिया दिखाई दे रहा है।

मछलियां भी दिखायी दे रहा है जो बड़ा छोटा साइज़ में है।

इस फोटो में मुझे एक दुकान लोग दिखाई दे रहा है जिसमें फूल लोग टंगा के हैं उसके बाहर मुझे बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

ये दो चिड़िया जो बाहर में है जिसका कलर रेड और येलो में है।

एक आदमी बैठके है और एक आदमी जो खड़ा होके।

फिर एक घर का वॉल का कलर पिंक कलर से पेंट करके है।

बाहर मुझे बहोत सारा खिड़कियां भी दिखायी दे रहा है।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

और इस मिठाई का डिजाइन फूल का तरह है।

एक आदमी जो बैठ के है फिर एक आदमी जो खड़ा होके है।

जिसके ऊपर सब्जियां रखे हैं।

के बाद उसके पीछे में एक वॉल है।

उसके बाद उसके ऊपर में जस्ट बोतल लोग भी दिखाई दे रहा है।

इस भी दिखाई दे रहा है एवं ब्रिज के ऊपर बहुत सारा आदमी भी दिखाई दे रहा हैं।